तो जैसा की आप देख सकते हैं यहां पर--

जिओ से रिलेटेड कोई भी--

यहां पर बहुत सारे कार्स रखी हुई हैं और यहां पर--

आप देख सकते हैं।

ये एक बहोत बड़ा बस स्टैंड है।

ये एक शॉप हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं--

है यहां पर अपना--